एक गाड़ी का इंजन दिख रहा है। एक गाड़ी ऊपर टंगी हुई है। इसके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है।

और यहाँ सामने एक खड़ा हुआ है एक औरत खड़ी हुवी है।

और एक एक इन्सान बैठा हुआ है। उस तरफ दो लेडीज और एक आदमी बैठा हुवा है।

और यहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ है पास-पास बहोत बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

देख सकते हैं सामने एक मंडप सजाया हुआ है और यहाँ पर बहोत सारे फूल लगे हुए हैं पीले।

फाइव फ़ादर्स ने अजी अलग कपड़े पहने हुए है। पीछे कुछ बच्चियाँ दिख रही हैं जिन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं।